ये सब बर्तन जो हैं स्टील के दिखाई दे रहे हैं।

और दो बाइक भी यहाँ पर खड़ी हुई हैं और ये --

और यहाँ पे गमला वगैरह छोटी-छोटी भी दिखाई दे रही है।

यल्लो कलर का दिखाई दे रहा है और इसके आगे काफी सारे लोग जो है खड़े हुए हैं।

ये कोई सी टीवी वगैरा जैसे दिखाई दे रही है।

और ये थोड़ा ब्लैक ब्लैक सा भी दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे मतलब बस व- वो बाइक भी खड़ी हुई है। कार भी यहां पे खड़ी हुई है। एक छोटा-सा बच्चा है।

और एक अंकल हैं जो कुछ बना रहे हैं।

और पिंक कलर से थोड़ा कुछ पुता है बाउंड्री जैसी।

और यहाँ पे ऊपर वाइट वाइट कलर में दिखाई दे रही है ये पूरी।